चित्र में मुझे ए_सी दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे एक ट्रैक्टर की ट्राली और एजेंसी जैसा दिख रहा है।

चित्र में मुझे हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे ऊपर से टीना लगा दिख रहा है।

कई सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक कच्चा घर दिख रहा है।